बोहोत से छोटे छोटे पत्थर है जिनमें से पानी नीचे की और आ रहा है।

यहां पर मंदिर बना हुआ है मंदिर पुराना है।

यहां पर एक बिल्डिंग है जो पीले रंग की है।

यहां पर कुछ लोग खड़े हुए है यहां पर टोपी लगा रखी है।